सामने हमें एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ हमें एक चर्च दिखाई दे रहा है। चर्च का कलर गुलाबी और सफ़ेद है। अ चर्च के सामने बड़ा मैदान है जिसमें छोटी - छोटी --

उपर एक बल्ब लगा है। नीचे शटर लगा हुवा है जो फिरोजी कलर से है और सामने कांच का दरवाज़ा बना हुवा है। शटर के उपर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल --

जालियाँ लगी हुवी हैं जिसके सामने एक मैदान है मैदान में बहुत सारी लड़किया महिलाये पुरुष बच्चे खड़े हुवे लाइन लगाए खड़े हुए हैं ।

यहाँ पर हमे एक तस्वीर दिखाई दे रही है इस तस्वीर में हम देख सकते है की यह किसी जिम की तस्वीर है जिसमे बहोत सारे आ मशीने दिखाई दे रही हैं कुछ ब्लैक कलर की प्लेटे और --

अ-दिन में रेड -रेड फूल गी न्-खिलते हुए दिखाई बहोत ही जादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं और कुछ साइड में और भी पौधे दिखाई दे रहे हैं।